और एक ने व्हाइट कलर का शूज़ पहना हुआ है दोनों ने चप्पल पहनी हुई है।

और उसके साइड में एक बॉक्सर बॉक्सिंग का रखा हुआ है नीचे तो डंबल रखा हुआ है और पीछे लिखा है --

एक मॉल के दो शॉप दिख रहे हैं एक हॉबीज आइडिया नाम लिखा हुआ है उसमें बलूंस बहुत सारे लगे हुए हैं।

और बिल्डिंग के ऊपर अ एक पिस्ता कलर का वॉल दिख रहा है।